यहां पर हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं एक--

इस फोटो में हमें एक पार्क का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर चार लोग--

पीछे हमें बहुत सारे हरे भरे वृक्ष नजर आ रहे है हिरण घास खा रहे है।

इस फोटो में हमें एक बहती हुई सुंदर नदी दिखाई दे रही है।

इस दुकान में बहोत सारी पुस्तकें नजर आ रही हैं।

दुकान के बाहर एक महिला की डमी है डमी को साड़ी पहनाई गई है।

इस चित्र में हमें एक होटल नजर आ रहा है। होटल पर लिखा है रजवाड़ी--

दुकान के बाहर लेडी डमिस है डमिस को सुन्दर कपड़े पहनाए गए है यहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

इस शॉप मैं हमे तरह तरह के चश्मे नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमे बहुत सारे विद्यार्थी--

कागज से मॉडल बनाते हुएं नजर आ रहे हैं।